जिसमें दो विंडो भी बनी हुई है लकडीयों की।

मैं देख पा रहा हूं कि--

और दीवालों पे एक ब्लैक और एक रेड कलर किया गया है।

पाइप की रेली लगी हुई हैं।